इस टायर पे चॉक से कुछ लिखा हुआ और कुछ गोल बनाया हुआ दिखाई दे रहा है।

पीछे में दीवार दिखाई दे रहा है जो--

यह हाथी दिखने में बहोत बड़ा है उसके शुड के पास रंग किया गया है।

इस तस्वीर में स्वाद वाटिका रेस्टोरेंट का दृश्य दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर में एक शटर लगाया गया है।

इस तस्वीर में यूनियन बैंक का दृश्य दिखाई दे रहा है।

आसपास में कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

सैलून का दृश्य दिखाई दे रहा है।

और इसके पास धूप आते हुए नज़र आ रहा है।

नीचे में ढेर सारे दौरिया रखी हुई नजर आ रही है।

इस तस्वीर में एक टेलर का हाउस का दृश्य दिखाई दे रहा है।

जहां पे मेडिकल लिखा हुआ नजर आ रहा है।

इसकी बड़ी सी चोंच भी दिखाई दे रही है जो येलो कलर की है।

बाहर में भी कुछ पोस्टर चिपकाए गए हैं।

एक फोटो में एक लड़की ने गहना पहना हुआ है।

एक कुलर भी दिखाई दे रहा है।

रू रूम दिखाई दे रहा है जो पेंट नहीं किया गया है।

यलो कलर का है उसमें एक खिड़की भी दिखाई दे रही है।

इधर बॉस का टेंट बना हुआ है।

टेबल स्टूल भी रखा गया है।

और कुछ के हाथ में बड़ी बड़ी दौरिया हैं।

थोड़ी थोड़ी डिजाइन भी बनी हुई है जो थोड़ी येल्लो कलर की दर्शाती हुई नजर आ रही है।

और यह मूर्ति के नीचे में बैठने की जगह बनाया गया है जिसे लॉर्ड बुद्ध ने दोनों पैर करके बैठे हुए हैं।

इस तस्वीर में एक दवा दुकान दिखाई दे रहा है।

इसके बाहर में थोड़े से पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

बोर्ड जैसा ड्राइंग बना हुआ नजर आ रहा है जिसमें थोड़े थोडे कलर दिखाई दे रहे हैं और नीचे का फर्श ब्लैक है।

और बड़े बड़े कौशल भी रखे गए हैं।

गनेस जी के पास ही में--

एक बहुत बड़ा टावर दिखाई दे रहा है।

और एक येलो कलर का घर दिखाई दे रहा है जिसमें ढेर सारे पिलर्स दिखाई दे रहे हैं।

कुछ पौधे पौधे बांस में करके बड़े किए जा रहे हैं।

इस फोटो में रखे गए हैं।

पेड़ पौधे भी लगे हुए नजर आ रहे हैं।

यहां पे टेंट भी लगे हुए हैं।

कुछ पर्दे भी दिखाई दे रहे हैं।

जहां पे ढेर सारे लोग टेबल पे बैठे नजर आ रहे है।

और यह जगह को परदे से पूरी तरह कवर कर दिया गया है।

यहां पे ढेर सारे लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

और एक शीशे का दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

उसके ऊपर एक छोटा सा बाल्टी जैसा कुछ रखा हुआ नजर आ रहा है।

और एक पंखा दिखाई दे रहा है वाइट कलर का भी कुर्सी भी दिखाई दे रहा है।

फ्रंट का व्यू दिखाई दे रहा है।

और यहां पे ढेर सारे टेबल भी दिखाई दे रहे हैं।